ये कोई होटल ढाबा सा दिख रहा--

यह एक प्लेग्राउंड है यहां गार्डन मैदान है बच्चे खेल रहे हैं यहां पर।

और ये स्टार के जैसा कुछ बने हुआ है लाइट्स है लाइटिंग वगैरा है।

और यहाँ पे दो डस्टबीन रखी हुई हैं लाल और हरी हरी कलर की दो ही कलर की डस्टबीन रखी हुई है हरी और उदि कलर की डस्टबिन है।

ये कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेज है ऐसा दिख रहा ये।

यहां फुगे वगैरा भी लगे हुए हैं और सामेआने में देखिए ये लोग डांस प्रैक्टिस के रहे--

अ और इसमें बच्चे पानी में तैर रहे हैं पीस अ पिसल के आके पानी में गिर के जैसा है।

कर रे शायद लो वहां वहां पर सामान दिख रहा खेत की का खेती करने का--

अ ब्लैक व्यू दिख रहा है ये एक और यहां पर समंदर पानी है पूरा यहां पे भरा हुआ उधर साइड घास है सड़क है इधर साइड से भी सड़क है।

ये एक दुकान है और ये दुकान का नाम क्या है बास्किन रॉबिन बोलके नाम है दुकान का।

यह एक जंगल के जैसा दिख रहा है यहां पर।

कितना नजारा दिख रहा है ये वाव ये बहोत ही खूबसूरत नजारा दिख रहाहै पानी का फवारा निकाल कर आ रहा है इसमें से--

सड़क पर बैठ के चूड़ियाँ बेच रहे हैं इनो रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं इनके पास और लोग यहाँ बैठे के देख रहे हैं यहाँ पर चूड़ियाँओ --

व्हाइट कलर की बिल्डिंग है। बहोत जबरदस्त दिख रहा है ये तो।

ये पहाड़ पे से पानी आ रहा और भैया और नीचे लोगा हैं इसमें।

और सब मैट्स पे बैठे हुए लाल होते कलर के मैट से वहां बोला रखे हुए है और यहां पे जामुनी कलर के मैट पे बैठे हुए उनके सिखाने वाले बाजी--

और उम फैन लगा हुआ है खिड़की है वहां पर कुछ वायर वगैरा है।

और के तो भी ठेले हैं यहां बढ़ियां है फ्रूट्स हैं बढ़ीयां है यहां पे--